यह कलाकृति नारंगी रंग की है और ऊपर का मौसम साफ है।

यह किसी जनरल स्टोर के काउंटर की तस्वीर है।

यह किसी शोरूम के अंदर की तस्वीर है।

और इन स्कूटर के पीछे काफी बड़ा सीसा लगा हुआ है।

देखने में एक जगह पेट्रोल और एक जगह डीजल लिखा हुआ है।

काफी सारे बैलून्स लगे हुए हैं।

और लेफ्ट साइड में एक लाल रंग की दरी भी है और पंडाल के सामने एक मूर्ति भी है।

मशीन को एक टेबल पे रखा गया है।

इस बड़े से इमारत के सामने एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है जो की हरा भरा है।

इस इमारत के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रास्ते गए हुए हैं।

राइट साइड में कुछ बैठने के लिए बेंच भी बने हुए हैं।

बाहर काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

सामने में एक नदी है जिसमें गंदा पानी बह रहा है।

ऊपर के चट्टान का रंग काला है।

यह मॉल के सामने की दीवार में काफी बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं।

सामने में कई सारे घर और बिल्डिंगस--

जिम में विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज इक्यूपमेंट्स है।

यह एक प्रज्ञा केंद्र की तस्वीर है।

सामने में एक दीवार प्रज्ञा केंद्र के सारी सेवाओं का उल्लेख किया गया--

क्षेत्र में काफी सारे क्रीम बॉडी लोशन और फेस वॉश रखे गए हैं।

जिसमे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे माइक्रोवेव अवन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रखे हुए हैं।